पल्सर है अ एक बाइक है और छोटा सा तलाब है।

दुकान है लहसुन है गाजर है केला है अनानास है एक लड़का है वह बेच रहा है।

लकड़ी का ख़ुर्शी है तीन चार ख़ुर्शी है धरती है घास है पौधे है अशोक पेड़ हैं।

दो भेड़ है फुटबॉल है जमीन है बड़ा सा पत्थर है छोटे छोटे घास है और गेंद है और यहाँ एक घेरा मे हैं।

एक बड़ा सा हॉल है इसमें कैमरा लगा हुआ है और आदमी हैं स्टेज सजा हुआ है।